पीछे पेड़ लगे हुए है पत्थर की नक्काशी दिखाई दे रही है अअ मंदिर में तीन लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

ग्राउन्ड में एक लकड़ी लगी एक लड़का खेल रहा है| फर्श दिखाई दे रहा है दो लाइट दिखाई दे रही है।

तीन चाउग बैठे हुऐ दिखाई दे रहे हैं नीचे मैदान बना --